वहां पर छत डालने वाले व्यक्ति के हाथ में एक पर्ची है और सीमेंट की बोरियां है।

सीमेंट बालू और गिट्टी से छत ढाला जा रहा है।

सामने किसी जंगल का व्यू दिख रहा है।

सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जो वाइट कलर से पेंट हुआ हुआ है।

सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जो वाएट कलर से पेंट है।